यहाँ पे खिडकियां को जाली से घेरा गया है ताकि कोई इधर आ न सके कुछ पोस्टर्स उस्टर्स भी लगे हुए हैं कुछ बच्चे पेड़ के पौधे बैठे हुए हैं कुछ बच्चे अलग-अलग भी बैठे हुए हैं।

कई जगह कई सारे बिल्डिंगे भी हैं। यहाँ पे घेरा भी गया है ग्रिल से यहाँ पे फूल-वूल भी लगे हुए हैं कोई इंसान अगर चाहे यहाँ पर आके बैठ सकते हैं और शाम का अनुभव कर --